कुछ इसमें डोरमैंट का कलर हर तरह के हैं। कुछ गीम् पीले हैं कुछ नीले हैं कुछ गुलाबी हैं कुछ लाल हैं।

यह डोरमेट एक बॉक्स पर रखे हुए हैं बॉक्स पर नी रेड कलर की --

इस तस्वीर मे हम देख सकते है की यहाँ पर हमें एक एस.बी.आई का अ एस.बी.आई इंश्योरन्स का ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक सफ़ेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

सामने बहोत सारी बाउंड्री बनी है और एक गेट लगा है जिसका कलर काला है।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे ग्लास दिखाई दे रहे हैं जो एक के ऊपर एक सजा कर रखे हुएं हैं। ग्लास का कलर --

इस तस्वीर में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा हैं। पार्क के दोनों तरफ छोटे-छोटे पेड़ लगे हैं। बीच में सड़क है और और ाम पार्क के चारों तरफ बहोत बड़े-बड़े --

पेड़ लगे हुए हैं। वे सामने से सामने से कुछ व्यक्ति --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक का ऑफिस है। जहाँ पर ब्लू कलर के ये तीन बैनर लगे हुए हैं और इन पर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर बहोत सारी मशीनें दिखाई दे रही हैं जोकि एक फैक्ट्री में रखी हुई हैं। फैक्ट्री के ऊपर टीन शेड डाला हुआ है। टीन शेड --

सफ़ेद कलर का है और बहोत बड़े-बड़े टिन रखे हुए हैं और कही कांच लगे हुए हैं और कही टिन लगे हैं जो दो मशीन रखी हुई है। उनका कलर --

उसके ऊपर एक चिड़िया एक कबूतर बैठा हुआ उस बॉक्स के अंदर देख रहा है सामने हमे घास --

मैदान दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर बोहोत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो बोहोत ही सुंदर --

और अध्यापिका खड़ी हैं। जिन्होंने फिरोजी कलर की साड़ी पहनी हुई है और कुछ नृत्य की हुई लड़की --

साइड में बहोत बड़ा ब्रिज बना हुआ है। उसके साइड में सड़क है जोकि सुनसान है। नीचे कच्चा-वच्चा रास्ता है।

उसमें बहोत सारा कचरा है। सड़क के किनारे बहोत सारे पेड़ --

अ पेड़ों में मिट्टी लगा रही है सामने।

ब्लैक और ग्रे कलर की जैकेट पहनी हुई है। अम्म्म एक गेट दिखाई दे रहा है जोकि फिरोज़ी और सफ़ेद है। एक बैनर लगा हुआ है जिसमें ---

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब के अंदर बहोत सारे नाव चल रही हैं। जिसमे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं। तालाब के किनारे --

अ कुछ व लकड़ी के सामान अ दिखाई अ कुछ लकड़ी के सामान लगा रहे हैं।

एक सड़क के किनारे बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं और एक सड़क पर बहोत सारे ट्रक दिखाई दे रहे हैं जो भी सड़क जो कि --

तस्वीर में हम देख सकते है की यह किसी कैफे या रेस्टॉरंट तस्वीर है जिसमे एक व्यक्ति दो अ दो लड़किया --

कुछ व्यक्ति सन दुकानों पर बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। सामने से कुछ व्यक्ति आ रहे हैं और कुछ व्यक्ति जा रहे हैं। नीचे कुछ --

और सामने हमें कुछ मुर्तियाँ कुछ नक्काशी पुरानी मुर्तियाँ और कुछ नक्काशी वाले सामान दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। कुछ बिल्डिंग पुरानी हैं और कुछ बिल्डिंग नई हैं। कुछ बिल्डिंग एक बिल्डिंग का कलर हरा और गुलाबी है और बिल्डिंग का कलर --

और बिलकुल बिलकुल खत्म हो गया है। सामने में गेट दिखाई दे रहा है जिसका कलर मैरून है और कुछ सीढियाँ दिखाई दे रही हैं जोकि ऊपर जाने के लिए बहोत ही पुराण --

इस तस्वीर में हम देख सकते है की यहाँ पर यहाँ पर विकास डेरी पार्लर दिखाई दे रहा है जो कि लाल कलर से लिखा हुआ है।

और उसके सामने एक जाली लगी हुवी है जिसका कलर कत्थई है। सामने तीन चार पुरुष पाँच पुरुष और दो महिलायें खड़ी हुवी --

और कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। नीचे कारपेट बिछा है।

अ इंजन दिखाई दे रहा है। आसपास बोहोत सारी गिट्टी है और कुछ बाल्टिएँ हैं और ऊबड़ खाबड़ अ सामान पड़ा हुआ है।